यहाँ हअ रास्ता है और रास्ते के किनारे तीन बड़े बड़े पेड़ हैं नारियल के जोकि हरे रंग के हैं।

और साइड में बिल्डिंग है दो मंजिला इमारत है जोकि सफेद रंग की है।

एक डमी है सामने जिसने ग्रे और येलो रंग के कपड़े पहने हुए हैं डमी के बाल फुले हुए हैं और हैंगर में --

यह एक ऑफिस जैसा लग रहा है काउंटर है रिसेप्शन काउंटर उस पे फ्रो फ्रेम करके फोटो रखी गई है।

जो क्रीम कलर की है उस पे एक दीवाल घड़ी टंगी है जो पीले रंग की है और बाजू में एक फ्रेम की हुई पेंटिंग है।

यह एक कपड़े की दुकान है इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे थान के कपड़े काँच में लगे हुए हैं।

जिसमें से एक एक साड़ी पर्पल कलर की प्रिंटेड है उसके बगल में नीले रंग की ब्रासो है उसके बाद क्रीम कलर की है।

एक मंदिर है मंदिर का गुबद केसरी रंग का है मंदिर के गुबद के नीचे हरे रंग के पत्तों से सजाया गया है।

और अम यहाँ पे गेट है गेट पे लिखा है गेट नंबर चार पीले रंग का है दो आदमी खड़े हैं।

यहाँ पे एक बैनर हैनीले रंग का जिसमें काले रंग से लिखा है ड्रॉपर बैच और लाल रंग से लिखा है टारगेट --

उसके बगल में स्कूटी और बाइक खड़े हैं और काँच का दरवाजा और खिड़की हैजोकि बंद है उसके ऊपर ए_सी फैन लगा हुआ है।

और बैंक का बोर्ड लिखा लगा है जोकि आई_सी_आई_सी बैंक है।

यहाँ मैदान है मैदान में चार पाँच बाइक खड़ी हैं काले रंग की पर्पल कलर की एक छोटा सा बच्चा खड़ा है जिसने लाल रंग की कपड़े --

एक सीमेंटेड दीवाल है जोकि ग्रे कलर की है छत है जो कि सफेद कलर की है और खिड़की है वो खुली हुई है।

तीर क लड़के हैं जिसने कुर्ता पजामा पहना हुआ है ऐ --

ओ काले रंग का और ऑरेंज कलर का पर्दा लगाया है कमरे में कपाट रखा गया है जो कि हरे रंग का है कपाट पे काँच लगा हुआ है।

जिसकी पत्तियाँ हरे कलर की है और एक आदमी है जो काले रंग के बाइक पे बैठा हुआ है।

जिसने लाइनिंग की टी शर्ट पहनी है ब्लू और वाइट लाइनिंग है और हाफ पैंट पहनी है।

जोकि हरे रंग के हैं और आसमान है जोकि ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है।

और कमरे में लाइट जल रही है एक कबाड़ रखा है कमरे में लकड़ी का--

यह एक तीन रास्ता रोड है और यहाँ एक बिल्डिंग है जो सफेद रंग की है इसकी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं और --

पेड़ है जो कि हरे रंग के हैं उनकी पत्तियाँ हरी है।

पेड़ लगे हैं जोकि इनकी पत्तियाँ हरे रंग की है।

यह एक मैदान है मैदान पे कुछ हिस्सा सीमेंटेड है और बाकी हिस्से पे मिट्टी है मिट्टी पीले कलर की है।

यहाँ गेंदा के फूल की खेती की गई है गेंदे के फूल है जो --

वह अअ केसरी और पीले रंग के हैं गेंदे के पेड़ की पत्तियाँ हैं वह हरे रंग की है।

रिसेप्शन काउंटर जोकि सफेद और ग्रे कलर का है उसके पीछे कुर्सी है जोकि काले रंग की है।

यह एक क्लिनिक की तरह है इसकी दीवारें सफेद रंग की है यहाँ पे एक बेड लगा है।

सामने एक मैदान की तरह है वहाँ पर दो तीन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जोकि सफेद और चौखड़ी रंग की है वो कार है।

एक बहोत बड़ी नदी है नदी का पानी नीले रंग का दिख रहा है और नदी में एक नाव है।

नाव में दो आदमी बैठे हुए हैं और दोनों आदमी के हाथ में चप्पू है जिससे वह नाव चला रहे हैं।

यह एक ऑटो गैलरी का पिक्चर है ऑटो गैलरी की दीवार एक केसरी रंग की है।

इसमें मिट्टी पीले रंग की है दो आदमी हैं जो ट्रक को धक्का दे रहे हैं।

किसी चिड़िया घर का फोटो है मैदान है जिस पर हरी हरी छोटी छोटी घास है घास के बाद जाली लगी हुई है।

यहाँ है एक आदमी शर्ट और पैंट पहने हाथ में हरे रंग की पाइप लिए एक स्टील की स्ट्रेट पे --

यहाँ बहुत सारे घर है जो कि केसरी रंग के हैं उनके दरवाजे और खिड़कियाँ सफेद रंग की हैं जो कि बंद है।

ओ जो हरे रंग के हैं और छोटी सी घास है एकदम छोटी जो हरे रंग की है बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी पत्तियाँ हरे हैं।

आर_के कॉफी स्टाल का फोटो है यहां पे एक आदमी लाल रंग के शर्ट पहने कॉफी बना रहा है।

और इसका गेट वाइट कलर का है ये दोमिंचला इमारत है ये भी सफेद रंग की है।

यहाँ एक ज्वेलर शॉप की फोटो है जो जिसका नाम है इंद्रवती ज्वेलर्स --

और ये बजेक ऑरेंज कलर की है सामने काँच लगा हुआ है इसके बगल का स्वेटर है वो ऑरेंज कलर का है जो कि बंद है।